बैलून छपे पूरा डेकोरेशन करके है यहां पर।

टेबल है और टेबल पर पड़ा हुआ है चश्मा और लैपटॉप ।

ये बम्बू सा भी दिखाई दे रहा है और व्यू बहुत सुंदर देख रहा है। आसमान एकदम आ ब्ल्यू कलर में और व्हाइट कलर में --

थोड़ा सा आगे जा कर वहां पर व्हाईट बोर्ड है।

ये एक समुंदर का किनारा में है जहां पर एक लड़का बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर में ब्लैक शर्ट पहन के और जींस पहन के बिना चप्पल का।

सामने में एक बड़ा सा ब्रिज है और वहां से दिखाई दे रहा है व्यू प्वाइंट जो कि आसमान बहुत सुंदर सी एकदम स्काई ऊ --

येलो और रेड कलर और बरांदा में बाइक और कार और बोलेरो अलग अलग गाड़ी रखा हुआ है।

सामने में एक बाइक भी है और इंसान भी खड़ा है।

वो दोनों वॉल को तोड़ रहा है उसका पीछे में एक अ लात लकड़ी भी है जो कि अ दो प्रकार का हिस्से में लग रही --

लाइट येलो और ग्रीन कलर पर जल रही है और ऊपर में एक घास सब भी दिखाई दे रहा है।

नीचे पर पत्ता है जो की दामुन का पत्ता है ग्रीन कलर --

मकान है जो कि कंप्यूटर सब भी है और दो फ्लोर में बनाया गया है बिल्डिंग का बीच में--